यहाँ पर एक दीवार पर काफी सारी लाइटें लगी हुईं है दीवार के नीचे कुछ सीमेंट से बने हुए--

और सामने एक बड़ा काउंटर बना हुआ है दिवार पर एक घूमने वाला फैन भी लगा है।

काले और सफेद रंग के बटन बने हुए है जिनसे हारमोनियम अपना संगीत--

यह पुतला एक कपड़े की दुकान में खड़ा हुआ है. इस पुतले के पीछे हेंगर --

उसके ऊपर एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है और --

और नीचे वाले ईमारत पर हरे रंग की पट्टियां हैं।

और मैदान के बीचों बीच खिलाड़ियों के बैग और उनकी ड्रेस रखी हुई है।

यहाँ एक उप डाक घर हैं उप डाक घर के सामने एक पेड़ लगा हुआ हैं और पेड़ के चारों ओर--

यहाँ जमीन पर कुछ छोटे-छोटे पौधे दिख रहे हैं सामने कुछ छोटे और बड़े पहाड़ है।

उसके बराबर में एक नीले और एक काले सफेद रंग का खंबा लगा हुआ है।

यहाँ क्लास में एक अध्यापक अपने छात्रों को --

कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्र और छात्राएं अपनी --

यहाँ बैहते हुए पानी के तालाब के किनारे में दो जानवर बंधे हुए हैं।

तो थमले है दोनों थमलों पर गुलाबी रंग का पर्दा लगा हुआ है।

और मंदिर के चारों ओर पेड़-पौधे नज़र आ रहे है मंदिर पर सफ़ेद रंग की पुताई हो रही है।